और इस पर कांच के शीशे भी लगे हुए हैं।

और कुछ सोफे भी हैं।

और इसके पास ग्रिल है और थोड़ा पीछे हटके एक तालाब भी है। तालाब के पास पेड़ पौधे हैं।

और तालाब से परे गांव भी हैं।

और इसमें बहुत सारी कुर्सियां और बेंच भी हैं।

जोकि वह लंच कर रहे हैं।

और इसमें वाइट कलर का पेंट हो रखा है।

और इनके पास एक मग्गा भी धरा है।

और इसके पास एक पेड़ भी है।

इसमें दवाई या केमिकल है।

और इसके इससे कुछ खंभे हैं जिन पर लाइना भी हैं।

यह एक बिल्डिंग है और इसमें कुछ लोहे की खिड़कियां लगी है।

जो कि लोहे का है और इसके बाहर एक हरे कलर का पेड़ खड़ा है और बहुत सुंदर है।

जो कि मैक पर कुछ बोल रहे है।

और नीचे टाइल लगी हुई है और दीवारों पर भी।

और इसमें एक बच्चा भी है।

और इसमें नीले कलर का पेंट हो रखा है।

और कुछ सीढ़ी भी धरी हुई है।

और इसके पास कुछ बेड और भी है और कुछ टेबल भी हैं।

और इसके द्वारों पर कुछ सर्किट भी लगे हुए हैं।

और इसके पास एक बैग भी है।

और एक कैमरा भी है।